और यहां कुर्सी के पास कुछ लोग सो रहे हैं।

और यहां पे एक शटर भी ऊपर में दिखाई दे रहा है जो टी टीना का है।

और एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा जो येलो कलर में है।

और यहां पे एक लड़की अपना इलाज करवाने आई है।

और यहां पर नीचे में लैब जांच लिखा हुआ है।

बालकनी दिखाई दे रहा है।

और पीछे में व्हाइट और रेड कलर का बिल्डिंग है।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पर्दे भी लगाए गए हैं बगल बगल में।

ऊपर में कुछ लाइटें भी लगाई गई है।

इस तस्वीर में बड़ा सा एक रोड दिखाई दे रहा है।

बहोत ही अच्छा बना हुआ है।

यहां पे पास ही में एक स्कूटी भी लगा हुआ है।

पूरा खाली जगह है जिसमें घास दिखाई दे रहा है।

चीजे रखी हुई है और एक बड़ा सा मशीन भी रखा हुआ है।

कुछ और भी बनाया हुआ है।

और सामने में एक ए_सी और कुछ पंखे दिखाई दे रहे हैं।

मस्जिद के बाहर एक रोड भी बना हुआ है।

बिल्डिंग के पास कुछ लिखा हुआ भी है।

तस्वीर मे एक बैनर के पास राधा ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ है।

जिसमें ऊपर में ढेर सारे डिजाइन बने हुए हैं।

इस तस्वीर में एक लड़की नृत्य करते हुए दिखाई दे रही है।

अंदर में एक ब्लैक कार और कुछ पंखे।

बाहर में भी कुछ बैनर लगे हुए हैं।

कोई ग्रीन कोई येलो कलर का है।

इस तस्वीर में लिखा हुआ है कुक हेल्दी ईट हेल्दी ।

वो कुछ गाड़ी भी दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग के ऊपर किसी चीज का बैनर चिपकाया गया है।

और यहां पे ब्लैक कलर में वाइट कलर में कुछ लिखा हुआ भी है और यहां ले ढेर सारे शीशे भी दिखाई दे रहे हैं।

और यह घर ईंटे का बना हुआ है।

पे ढेर सारे बांस भी लगे हुए हैं।

और पीछे में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है।

इसमें कुछ लिखा हुआ है और आसपास में बालू रखे हुए हैं।

यहां पे ढेर सारे कुर्सी लगाए गए हैं।

कार धुलने की जगह लग रही है।

ऊपर में कुछ फैन और पिलर भी लगे हुए हैं।

यहाँ पे सामने में एक केले का भी पेड़ दिखाई दे रहा है।